सीमेंट की टंकी बनी हुई दिखाई दे रही उसके आसपास कुछ पेड़ लगे हैं।

सीमेंट के टाइल्स लगे हुए दिखाई दिए --